यहां पे जमात नहीं जच रहा है और जो पीछे है वो वहां पे बहुत सारे फैन और टीन का बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

और दो काटी का चमच है और एक चमच है और काटी का चम --

ये जो घर है बहुत अच्छा लग रहा है और गेट भी है और खिड़की है और बहुत सारे --

और यह लड़कियों का ड्रेस भी बहुत सारे नजर आ रहा है जो कि बंगाल लोग पहनते हैं।

कैंडल और उसके पास में भी बहुत सारे ईट लगा हुआ है शायद।

यहां पे फेविकोल भी दिखाई दे रहा है जो कि ये भी किसी चीज को जोड़ने के लिए किसी चीज को लगाने के लिए काम आता है।

यहां पे एक बैंक का नजारा है जो कि इसका नाम है एच_डी_एफ_सी बैंक --

जहां पे अभी कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है।

और बहुत सारे लोग हैं जहां पे वो शायद पीछे झूल रहे हैं।

ये जो बैंक है वो येलो कलर का है।

जो ईंटे वो बनाते हैं मिट्टी से और सुखाने के लिए यहाँ पे रख देते है।

पास में एक खिड़की है जहां पे ग्रील लगाया हुआ है।

के जो ऊपर है वो ऊपर टाइल्स लगाया हैं बहुत सारे जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां पर एक शॉप दिखाई दे रहा है जो कि से है और इसमें बहुत सारे इसमें खड़ा हुआ एक लोग दिखाई दे रहा है।

और कार भी एक नज़र आ रहा है और काले का पत्ते का पेड़ भी नज़र आ रहा है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे ह।

एक आंटी अपने बच्चों को लेकर जा रहा है स्कूल से।

यहां पे जो बैठने के लिए यहां पे ये जो बैग से टूटा है वो ऐसे लग रहा--

और यहाँ पे बहुत सारे बैट्री और वो जो मशीन की चीजें होते हैं यहाँ पे मिलता है।

वो बन रहा है और पीछे का बैकग्राउंड भी सुंदर हुआ है और ऊपर भी सुंदर हुआ है।

ये पे बहुत सारे मोबाइल्स की कवर लग रहा है नजर आ रहा है और--

ये किसी रेलवे स्टेशन का दुकान है।

के पास में भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा है हमको।

इसकी साइड में भी एक लड़का है और बहुत सारी बिल्डिंग नजर आए--

रास्ते के ओ उसके पास से बस है एक जहां पे लोग जा--